पुरा मार्केट लगा हुआ है और इसमें इ रिक्शा चल रही है एक सवारी भी इस पे बैठा हुआ है।

ईसा मसीह का कहानी तो अनमोल है जो हमलोगों को भी याद है।

फ्राइडे मनाने निकल रहें हैं ये फॅमिली के लोग हैं।

ट्रान्सफर किया जाता है बिजली लिया जाता है सब जगह का।

इ कर्नाटक का रेस्टोरेंट है जिसमें लिखा हुआ भी है होटल गेट वे कर्नाटका।

इस दृश्य को देख के लग रहा है पहाड़ी इलाका है।

जो नट होल्ट का कसा जाता है कोई चीज में सेट किया ट सेट करने से पहिले थोड़ा बहुत नट होल्ट कसा जाता है।

और इसमें लिखा हुआ है मारुति क्योंकि ये --

और अब छोटे जगह पे भी इस ई रिक्शा से हम जा सकते हैं अच्छा सुविधा है धन्यवाद।

ये सी.एस.सी. का दृश्य दिख रहा है सामुदायिक भवन है।

हवा-उवा दिलाया जाता है एक आदमी है जिनका गाड़ी खराब हो गया है।

यह धान का फसल लगा हुआ था जो कट चुका है कटा हुआ है।

अ बहुत सुंदर सजा-धजा है पंखे भी लगे हुए हैं पर्दा भी लगा --

कोई ईसा मसीह का सिंबल बना हुआ है ऊपर में।

हर एक तरह का डिफरेंट डिफरेंट खेल खेला जाता है गाव से बाहर ये बना हुआ रहता है।

बेनर भी लगे हुए है और बगल में भी घर है।

उसी तरह इसमें खेलने का ही समान है गिटार है बेंजो है।